यह एक अनुमंडल कार्यालय है जो की बेगूसराय जिला में स्थित है और उसके आगे तीन आदमी बैठे हुए हैं और गेट के बगल में साइकिल है और साइकिल के बगल में गेट सफेद कलर का है।